ये तीन शटर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है बाजू में बिल्डिंग है।

लोहा लगा हुआ है बास लगे हुए हैं खंभे है गड़े हुए है पुरे।

ये काली मिट्टी है पीले मिट्टी है और जिसमें हरे झाड़ लगे हुए हैं खुला आसमान है बाहर--